होटल है होटल मे दो लड़का कुर्सी पर बैठा है।

पीछे गली में बहुत सारा पत्थर उठाया बगल में फुल है दोनों तरफ और उस साइड हरा-हरा घास भी --

यूनियन बैंक यूनियन बैंक के सामने दो लड़का खड़ा है।

और घर के सामने तीन गाड़ी खड़ा है पेट्रोल पंप पे--

और इक तरफ घर बन रहा है और पम्प मे आदमी दिख रहा है और चार पांच ठो मशीन भी--

उसका ऊपर में भी एक खिड़की है खिड़की मे पर्दा लगा हुआ है.

यह पत्थर का मंदिर टाइप का बना हुआ है.

रूम है रूम में दो बिस्तर लगा हुआ--